ये जो पिक्चर हैं खुली ग्रैंड की पिक्चर हैं।

अलग अलग तरह के गलीचे रखे हुए हैं।

ये जो पिक्चर है एक पेट्रोल पंप की पिक्चर है।

पिक्चर डांस करते हुए बच्चे की पिक्चर है जो की स्कूल में डांस कर रहे हैं। उसने--